और सामने कुछ फूल दिखाई दे रही है और एक मोमबत्ती दिखाई दे रही है।

यह एक ऑफिस है। जहां पर दो कुर्सी दिखाई दे रही है।

यह एक गर है जहां पर एक इंडियन फूड की दुकान दिखाई दे रही है।

और एक कुर्सी दिखाई दे रही है।

और कुछ डिब्बे दिखाई दे रहे है और कुछ अंडे की ट्रे दिखाई दे रही है।

यह एक दुकान है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है।

सभी बच्चों पर पैर दिखाई दे रहा है।

अउर उसने कपड़े पहने हुए है।

यह एक फैक्ट्री है जहां पर कुछ व्यक्ति काम कर रही है।

यह एक हॉस्पिटल है जहाँ पर बहुत सारी व्यक्ति दिखाई दे रही हैं।

और सामने लोहे के गेट दिखाई दे रहे है।

और पीछे एक गेट दिखाई दे रहा है।

और सामने अंदर एक पंखा दिखाई दे रहा है।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

और ऊपर एक पंखा दिखाई दे रहा है।

यह एक नेहा मेगा प्वाइंट की दुकान है।

और आस पास कुछ गर दिखाई दे रही हैं और सामने खंबा दिखाई दे रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट है जहां पर कुछ कुर्सियां और एक मेज दिखाई दे रही है।

और सामने बहुत सारी लाइटें जली हुई है।

यह एक मेज है जिसके ऊपर मिट्टी के बने कुछ दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।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

और सोफो के सामने एक एल_सी_डी दिखाई दे रही है।

और आस पास कुछ हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

जिनको गुब्बारों से सजावट की रखी है।

कुछ बंद गोभी भी दिखाई दे रही है और कुछ केले दिखाई दे रही है।

और कुछ संतरे दिखाई दे रही है और कुछ टमाटर दिखाई दे रहेहैं।